यहां पर एक बगीचा जैसा बना हुआ है इसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं यहां पर।

यहाँ तीन छतरियां भी लगी हुई है जो कि रंग-बिरंगी रंग की है यहाँ कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पर एक सूरज दिखाई दे रहा --

यहां पर एक नाव रखी हुई है जो की पानी में है यहां पर खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है नाव में एक रस्सी बंधी हुई है।

जिसको एक आदमी पड़े खड़ा हुआ है यह चश्मा लग रहा है यहां पर कुछ गंदगी भ है।

यहां पास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है और दो लोग खड़े हुए है यहां पर एक बोर्ड भी रखा हुआ है।

यहाँ पर दो लोग खड़े हुए हैं जो की सफेद रंग की शर्ट पहने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी पड़े हुए हैं। इनमें कई सारे दरवाजे जैसे बने हुए हैं।

यह एक बहोत बड़ा मेला है जिसमें कई सारे झूले लगे हुए हैं यहाँ पर कुछ गोल वाले झूले भी लगे हुए हैं जिनमें डलिएं लगी हुई है।

यह फूल की गैलरी जैसी दिखाई दे रही है जिसमें कई सारे बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं और --

यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ आस-पास पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

नाक से ऊपर तक सिंदूर लगाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ फल भी रखें हुए हैं।